मैदान है जहाँ पर खूबसारे पेड़-पौधे है और वहाँ पर तालाब भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक भारतीय स्टेट बैंक दिखाई दे रहा है और इस स्टेट बैंक के बाहर और अंदर में अ कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।

--और यहाँ पर एक गायो का तबेला है जहा पर कुछ गाय बंधी हुई दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे खूब सारा बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है।

अनार ऑरेंज सेब केला और अंगूर ब्लैक अंगूर --

यहाँ पर गेंदे की फूल की ह खूब सारा लगाया गया है गेंदे के फूल को और यहाँ पर येलो और ओरेंज कलर की गेंदे के फूल लगे हुए दिख रहे है।

सारे लम्बे लम्बे और बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक विधायलए दिख रहा है और इस विधायलए का नाम है माध्यमिक विध्यालए जमनी भागलपुर।